जिसमें एक स्टेचू है उसको एक एक सलवार-सूट पहना के बाहर में रखा गया हुआ है।

और डैम के ऊपर लोहे की ग्रिल से पूरा किनारे कवर किया गया है।

और साथ में बहुत सारे पुरुष भी खड़े है खड़े है जो इस फॉर्म और बुक को लेने के लिए आए हुए हैं।

पोजीशन में इन तीनों का हाथ एक नीचे की ओर और इनका एक हाथ ऊपर की ओर है।

कुछ जो सामान है वह काउंटर में सामने रखे हुए हैं।

सूर्य की किरणे की छठा दिख रही है।

और जिम के ऊपर एक सीलिंग फैन लगा हुआ है।

जिसके ऊपर एस.बी.आई. बैंक का उम् एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक मजदुर जो एक छोटे से मिट्टी के गड्ढे के अंदर है।